उसका का सामने में छोटा-छोटा फ्लैग दिखाई दे रहा है।

बीच का तीन ब्लैक कलर में है।

और सामने में एक कार दिखाई दे रहा है।

और सामने मे पॉस भी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है।

और साइड साइड में बहुत सारा पोस्ट दिखाई दे रहा है।

और पीछे में वॉल दिखाई दे रहा है।

और पेड़ पौधा दिखाई दे रहा--

उसका सामने तीन आदमी दिखाई दे रहा है।

और नीचे में कारपेट दिखाई दे रहा है।

उसका सामने में विंडो दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का सामने में लाइट पोस्ट दिखाई दे रहा है।

वायर दिखाई दे रहा है।

ओटो दिखाई दे रहा है।

और सामने में एक इंसान दिखाई दे रहा--

जे में विंडो दिखाई दे रहा है।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

उसका सामने में एक शटर भी दिखाई दे रहा--

इसमें एक टेबल दिखाई दे रहा है।

बीच बीच में टेबल दिखाई दे रहा है।

इधर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

और अंदर में बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा --

और उसका आगे में प्लास्टिक बेंच दिखाई दे रहा--

श्याओमी लिख के दिखाई दे रहा है सैमसंग लिख के दिखाई दे रहा है।

इधर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में बहुत सारा टेबल दिखाई दे रहा है।

और सामने मे फूल दिखाई दे रहे--

पीछे में पहाड़ दिखाई दे रहा है।

और टेबल का ऊपर में प्लेट दिखाई दे रहा है।

इसका सामने में ग्लास दिखाई दे रहा है।